एहा मंदिर हवे इहा प आदमी मन पूजा पाठ करे बर आथे अउ फूल माला टंगाइस हवे।

यहाँ घर है सीढ़ी है बॉउन्ड्री हवे--

ए जग पेड़ आहय आदमी मन खड़ा आहय।

पुराना घर हे बुद्ध धर्मों का मूर्ति है यहाँ लोग मन आदमी मन पूजा पाठ करे बर आथे।